यहां पे एक लड़का भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो की कुर्सी पर बैठा हुआ है यहां पर एक कैरट भी रखी हुई है जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें गंदे के फूल भी लगे हुए दिख रहे हैं जो की पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं एण्ड यहां पर लाल कलर के भी फूल लगे हुए दिख रहे हैं यहां पर एक ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है।

एंड यहा पे कुछ बिजली के केबल भी लगी हुई दिख रही है यहा पे एक बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है उसके पास मे कुछ पेड़ भी लगे हुए दिख रहे है।

यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए दिख रहे है यहाँ पे एक लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है।

ये एक मकान है यहां पे तीनथ्थेड बना हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे सीमेंट के खम्भें खड़े हुए दिखाई दे रहे --

ट्रक भी खड़ा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे कुछ लाइट भी जलती दिखाई दे रही है यंहा पे लड़का भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक ऑफिस है ऑफिस मे लोहे की गेट भी लगे हुए दिखाईं दे रहे है यहां पे के स्वागतम द्वार भी दिख रहा है इसमे जीमें भी लगी हुई दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बार्थडे का फक्शन हो रहा है। यंहा पे दो हलोजन भी जलती दीकह रही है यंहा पे--

इसमे बहोत सारी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है यहा पे बहोत सारी बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यह पर एक ग्राउन्ड भी है जिस्मए कुछ हरा चारा भी दिखाई दे रहा है।